ऑरेंज हैं पीला हैं उस में इटो जैसी डिजाईन बनी हैं रैलिंग है नीले कलर की --

एक पिंक कलर की प्लेट में प्याज रखे हुए हैं एक रेड और सिल्वर कलर की मिक्सी रखी हुई हैं।

दो लाइटिंग दिख रही हैं।

और डिफरेंट चेयर्स दिख रहे है और लाइट दुकान में तीन जगह शटर्स लगी हुई हैं।

पेंट लोवर पहना हुआ हैं येल्लो कलर दिख रहा हैं एक ब्लू कलर दिख रहा है और पर्पल कलर दिख रहा हैं वाइट कलर दिख रहा हैं।

वॉल हैंगिंग बनाई है इसमें येलो कलर से बनाई हैं।

एक औरत ना ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हैं ब्लैक कलर की बॉर्डर पहनी हैं एक --

कलर की शर्ट पहनी हैं नीचे ब्लैक कलर का जीन्स पहनी हैं।

एक केंद्र हैं एक बड़ा सा लाल कलर का पोस्टर हैं।

कुछ खिड़कियाँ खुली हैं कुछ खिड़कियाँ --